इस चित्र में हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो काला और गोल्डेन रंग का है।

एक सफेद रंग का पोल भी हमे दिखाई दे रहा है।

यह चित्र में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है।

आदमी अपने हाथ में एक फोन पकड़ा हुआ है।

कुछ बॉटल्स रखे हुए है और विभिन्न चीजें हमें दिख रहे है।

एक साइन बोर्ड का रंग सफेद है जिसमें नीला और लाल कलर से लिखा हुआ है और एक साइन बोर्ड का रंग नीला है जिसमें सफेद रंग से लिखा हुआ है।

हमें घर जैसा कुछ भी दिख रहा है जिसमें खिड़कियां भी है और एक छत है जो नीला रंग का है।

हमें बहोत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

ए_टी_एम का दरवाजा बंद है।

यह चित्र में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

पास के टेबल के ऊपर हमें कुछ किताब जैसा दिख रहा है एक बिलिंग मशीन भी दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक बिल्डिंग दिख रहा है।

हमें बिल्डिंग के नीचे भी बहुत सारे साइन बोर्ड दिख रहे हैं।

यह चित्र में हमें बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र में हमें एक पार्टी का वातावरण दिख रहा है।

बहुत लोग दिखाई दे रहे है जिसमें से कुछ लोग नाचते हुए दिख रहे है।

हमें फूल के पत्ते भी दिखाई दे रहा है।

उसके आस पास ही हमें घास भी दिखाई दे रहा है और कुछ अलग पत्ते भी दिख रहे है।

झूला कुछ बांस जैसे बना बांस से बनाया हुआ कुछ में लटका हुआ है।

हमें बिल्डिंग में बहोत सारे खिड़कियां भी दिख रहे है।

हमें दूर में बहोत सारे बिल्डिंग भी दिख रहे है और जले हुए लाइट भी हमें दिखाई दे रहा है।